पंखे बहोत सुंदर है ये चांद पंख जैसे है।

यहां पे बहोत सुंदर तरीके से बिल्डिंग को सजाया गया है।

यहां बड़ी बड़े ट्रक और जीप गाड़ियां खड़ी है।

और बड़ी बड़ी झाड़ियां भी है बहोत बड़े बड़े पहाड़ है।

और बिजली के तार भी हैं एक पंखा भी रखा हुआ है।

बड़े-बड़े डब्बे रखे हैं और बोतल भी रखी हुई हैं।

ये सभी यात्री घूमने का लुप्त उठा रहे हैं यह काफी सुंदर नजारा--